चल रही है और बहुत सारा--

बीच में बहुत सारे खंभे भी लगे हुए हैं।

हुए हैं अंदर कुछ पंख लगे--

मैं देख पा रही हूं यह एक बड़ा सा ग्राउंड है।

यह एक ब्लैक कुर्सी है और एक वाइट कुर्सी है।

छत पर लोहे का छड़ चारों तरफ बिछा हुआ नजर आ--

ई काम करते नजर आ रहे हैं।

मैं देख पा रही हूं यह एक किचन घ--

सामने कुछ बाइक भी कड़ी नजर--